जैसा की हम देख सकते हैं हमको ये ब्रिज दिख रहा है ये ब्रिज हमको पहाड़ों के बीच मे दिख रहा है राइट साइड पहाड़ दिख रहे हैं जो ब्रिज है वो बहोत ही सुंदर लग रहा है सामने से एक कार आती हुई दिख रही है साइड में रेलिंग लगी हुई है।

खम्भे लगे हुए हैं जो की बहोत ही अच्छे लग रहै हैं। कार के अंदर से फोटो निकाला हूआ दिख रहा है जो की बहोत अच्छा लग रहा है ऊपर लाल कलर का पाइप दिख रहा है जो की बहोत ही अच्छ लग रहा है साइड में सुहान--

कुछ हमको यहाँ पर गाय दिख रही है जो दूर-दूर तक बैठी हुई दिख रही है गाड़ी भी दिख रही है जो बहौत दूर दिख रही है पहाड़ दिख रहे हैं पीछे पेड़-पौधे दिख रहे हैं बहौत ही प्यारा नज --

पीछे हमको चट्टानों के पहाड़ दिख रहे हैं जो कि बहोत ही प्यारे लग रहे हैं इसपे हरी हरे पेड़ झाड़ियाँ दिख रही है जो कि बहोत ही सुन्दर लग रहा है और पानी ब्लेक एंड वाइट दिख रहा है जो कि बहोत प्या --